सब व्हाइट कलर का रूम है जिसमे बहोत सारी वॉशिंग मशीन है कुछ फ्रीज़ हैं ब्लैक कलर के नीचे मे टाइल्स लगा है व्हाइट कलर के कुछ टूल है जो ब्लैक कलर के हैं साइड --

नदी है जिसका पानी काला है ऊपर में ब्रिज है नीचे मे लम्बे लम्बे से तार हैं ब्रिज पूरा लोहे का बना हुआ है दूर में पहाड़ है जिसमें बहोत सारे हैं साइड में कुछ पक्के के घर दिख रहे हैं जो की आसमानी वाइट है।

बड़ा सा पहाड़ है जो की व्हाइट ब्लू ब्लैक है जिसमे बहुत सारे कलर दिख रहे है कुछ ऑरेंज कलर के पत्ते है कुछ ग्रीन कलर के सामने मे एक बड़ा सा ब्रिज है जो व्हाइट कलर का है बीच मे उसके रोड पूल से बंधे हुए है में--

रूम है जिसके ऊपर में बिस्तर लगाया हुआ वाइट कलर का बड़े बड़े लाइट्स जल रहे हैं और लोहे की बेड सी बनी हुई हैं नीचे में घर का कलर वाइट है जिसमें बिट ब्लाक है।

का रास्ता है पूरा काला है सामने मे एक कार खड़ा है जो काला रंग का है एक गज का छेद दिख रहा है लाल से ऊपर में पूरा आसमान काला है एक साइड मे एक बिल्डिंग दो ताला है ।

इंग्लिश है और हिंदी लेटर भी है आसमान व्हाइट है बहोत बड़ा सा पहाड़ भी दिख रहा है।